दुकानों पे लिखा हुआ है कपिल पंडित।

कुछ आदमी लेटे हुए हैं।

गेट के ऊपर लिखा है वाशु ग्रीन ।

ये एक दवाइयों का स्टोर है इसपे लिखा हुआ है अंबे मेडिकोज दवाइयां।

नीचे साइड में घास है बहुत सारा--

इसका नाम है गंगा अमृत हॉस्पिटल ।

बहुत सारी डिब्बियां हैं दवाइयों की।

कुछ पीने की दवाई है कुछ खाने की दवाई है।

सारे मसाले हैं इसमें और बहुत बड़ी दुकान नीचे टाइल लगी हुई हैं।

इसमें कुछ आदमी अह कोई नए बना है।

और ऊपर एक आदमी सिम पोर्ट करने वाला खड़ा हुआ है।

मुझे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है मोमोज वगैरा मिलती है ठंडा।

काफी सारी चीज मिलती है इनमे।

उड़ पर ठंडे का फ्रिज लगा हुआ है। उसमें ठंडा रखा हुआ है स्टिंग वगैरह।

साइड में एक बाइक खड़ी हुई है।

दो बाइक खड़ी हुई हैं एक साइकिल खड़ी हुई है साइड में कुर्सी रखी हुई है।

एक आदमी हेलमेट लिए खड़ा है।

ये एक लीलकंठ पंजाबी ढाबा है।

बर्तन रखे हुए है ढोल है डस्टबिन है।

हवेली में कुछ सामान रखा हुआ है।

पाइप आ रहा है ऊपर तक पानी का नीचे बहुत सारे सारे गोल गोल से आले हैं लंबे लंबे से।

ऊपर टीन सेट है कुछ लोहे के पाइप हैं।

साइड में चूने के साथ डेकोरेशन है।

यहां तीन रॉयल इनफील्ड खड़ी है एक नीले रंग की एक लाल दो ब्लैक कलर की।

पीछे एजेंसी है आगे शीशा लगा हुआ है।

और उस साइड में बहोत सारी चीजे वगैरा है।

और ये बंदूक से निशाना लगा रहे हैं।

मंच है। नीचे फरस हो रहा है।

अ बहोत बड़े बड़े पेड्या साइड में भी--

और परक कुछ घर बने हुए है।

नीचे पार्क है पेटे खड़े हुए हैं।

और सब आहुति दे रहे हैं सामग्री के।

इसमें चूड़ी वगैरा अंडरवियर आदमी है छपे है कुछ पे।

और कपड़े डायपर वगैरह टंगे हुए हैं।

और गाड़ी खड़ी है बहोत सारे लाइटें हैं।

और बाहर नाली है एक।

शेप में शिशा भी है।

कुछ बिल्डिंगो पर खिड़की लगी--

पारक मे एक लड़का खड़ा हुआ है।

इसमें बच्चे रनिंग भी करते हैं।

दस ग्यारा बैग रखे हुए हैं।